एक जगह है| यहां पे बहुत सारी गड़िया खड़ी हैऑटो खड़े है हुई है| यहां पे लोगो के बैग वागेर रखे हूआ है।

ये कोई स्कूल है जाह जहाँ पर बच्चे बैठे हुए है| कुछ संवेलां चल रहा है| कुछ बच्चे एक शिक्षा खड़ी है| एक लड़की खड़ी है जिसने काले कलर कपड़े पेहेन रखी है जैसे लगता है सच्ची का हो| एक लड़की फोटो बना रही है विडिओ कुछ लोगों को देख--

मैदान है| मैदान मे कुर्सिया पड़ी हुई है| कुर्सिया हरे गुलाबी रंग हरे और क्रीम कलर की है| बहुत भीड़ है| यह ज्यादातर बच्चे बैठे हुए है।

एक गमला रखा हूआ है| एक गमले मे हरे कलर के पौधा लगे हुए है| बच्चे रंग बी रंगी छीजे बना रहे है| बच्चे मास्क पे--

एक हॉल है वह पे टी-शर्ट पड़ा हूआ है| लोहे के अंगेल लगे है | एक लड़का खड़ा है जिसने की हाफ जिन्स जिसने की जैकिट पेहेन रखी हिय टाइ लगा रखी है| शर्ट पेहेन रखी है जीन्स पेहेन रखी है शूज पेहेन रखी है केप लगा रखी है।

बड़ी जगह है जहा पे कुछ मेला टाइप का चल रहा है| यह पर एक गेट द्वार बना हुआ है जो की पीले रंग का है| उसपे कुछ लिखा हुआ है।

जो आदमी लेटा है उसने ट्रैक सूट पेहेन रखा है| हाफ लोर पेहेन रखा है उसके पास पानी की बोतल रखी हुई है| दो लड़के खड़े हुए है जो सफेद कलर की टी-शर्ट और शर्ट पेहेन रखे है दोनों ने काले कलर की ल पे --

ये एक खुला अ मैदान है| मैदान मे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है| बिल्डिंग सफेद आ सब पीले और लाल रंग की है| आसमान है आसमान नीला है नीला है| उसमे बादल बहुत सुंदर लग रहे है।

गेट बहुत बड़ा वाला लगा हुआ है| यह मंदिर सा बना हुआ है| नीचे हरी हरी जमीन है| पीले रंग की डेकोरेशन हो रखी है| यह कुछ व्यक्ति खड़े हुए है कुछ चल रहे है।

पीछे एक टॉवल है वो हरे सफेद रंग की है| एक आदमी बैठ हुआ है| बहुत से लोग खड़े हुए है। उसके पास टेबल है| टेबल लाल रंग की है| लाल और नीले रंग के गुब्बारे सजावट है| और लोगों ने टी-शर्ट पेहेन रखी है। स किसी ने शर्ट पेहेन रख--

कुछ लोग बैठे हुए है| जमीन पर सफेद रंग की चाद्दर बिछाई गई है| लाल रंग की कुर्सिया है| उसे पे लोग बैठे हुए है | एक आदमी एक लेटा हूआ है एक आदमी खड़ा हूआ है| एक आदमी उसके पैरों की मसाज कर रहा है।

बाजू मे एक पोस्ट ऑफ पोस्ट बॉक्स रखा हूआ है| और साथ मे एक बाइक रखी हुई है और कुछ लेडिज ए बैठी हुई है| और एक आदमी जाईल के अंदर कुछ काम कर रहा है| नीचे फर्श सब ब्राउन है दीवाल पीली है और --

एक बहुत ही अच्छ चित्र बना हूआ है| चित्र मे पूरा हॉल स बना हूआ है| जमीन बहुत ही साफ और सूत्री है| पत्थर बिछा हूआ है| पत्थर शीशी स चमक रहा है।